एक लाल रंग का पर्दा है जिस पर आकृति बनी हुई है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जो की टाइल्स लगी हुई है पीछे की दिवार दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग है चूँकि जिसका द्वार दिखाई दे रहा है जोकि पीले रंग का है जिसपे आकृति बनी हुई हैं।

यह एक सड़क का दृश्य है जिस पे एक ऑटो जा रहा है उसके इलावा एक साईक रिक्शा जा रहा है एक आदमी पैदल जाता हुआ--

एक लेटरबॉक्स दिखाई दे रहा है जो की लाल रंग का है तीनो गेट दिखाई दे रहे हैं जिसमे ताला लगा हुआ है उसपे कुछ पोस्टर लगे हुए है।

शर्ट पहनी हुई उसने हुई है उसने हेयर करवाया हुआ है पीछे कुछ बेंचे दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ लोग और एक लड़की--

जिस पर पीले रंग से चित्रकारी --